कसरत करते नजर आ रहा हैं ।

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसके बीच में कुछ प्रोजेक्ट ल लगा हुअा दिख रहा है जिसके हर --

यह एक पूल जैसे नज़र आ रहा है और उसके नीचे में बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी लगे नज़र आ रहे --

यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बैठी हुई नज़र आ रही है और कुछ बच्चे उस साइड है उसके किनारे में गमले भी रखे हुए हैं ।

यह एक बहोत बड़ा स्टेडियम है जोकि कुछ लोग इधर-उधर चलते नज़र आ रहे है और उस स्टेडियम के चारों तरफ लाइट है और बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है और ऊपर में एक बहुत बड़ा लाइट है जोकि चमकता हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

यहाँ पे एक नदी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर में नाव में दो व्यक्ति है और एक आगे की व्यक्ति उसको चला रहा हैं ।

यह एक होटल नज़र आ रहा है जिसके आगे जिसके आगे-पीछे सब बैठे हुए नज़र आ रहे है एक डॉयनिंग टेबल है और उसके आगे-पीछे कुर्सी लगी हुई हैं ।

जोकि वहाँ पे खाली है और कुछ दूर में कुछ लड़कियाँ बैठी हुई नज़र आ रही है उसके आगे में एक व्यक्ति खड़ा हुआ भी दिख रहा हैं ।